ये एक जू हे जहा पे बहुत सारे जानवर बैठे हे जी एक दो तीन चार पाँच जानवर बैठे हे और उसके आसपास दो कौवे भी बैठे हे।

यह एक जू सा दिख रहा है जहां पर पिंजरे में दो पक्षी दिख रहे हैं।

यह भी एक ज़ू सा दिख रहा है जहां पे एक चिता एक पेड़ के--

जिसमें से एक बीच में स्टैचू सा दिख रहा है छोटा सा ज्योकी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और--

जहां पे शादी के दो कपल्स बैठते हैं और उसके पीछे फ्लावर्स से स्टेज सजाया हुआ हैं जो की दूर से देखने मे बहुत अच्छा लग रहा हैं।

एक स्टेशनरी भी लग रही है यहां पर चेयर रखी हुई है और एक टेबल भी रखी हुई है बैठने के लिए।